और लकड़ी का एक कुछ रखा हुआ है टेबल जैसा।

इ बहुत बड़ा-सा इस्कूल है और अ ब ए बहुत --

स्टेचू बनाया हुआ है पूरा अच्छा से क्लियर तो नहीं दिख रहा है।

और एक बेंच भी है और है की कोई चीज का है।

यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए हैं एक टेम्पू है और सामने स एक और भी गाड़ी है ।

और खूब सुन्दर-सा दिख रहे हैं और बड़े अच्छे से साफ सुथरा है ।

ये सब बादल किया हुआ जैसा बुझा रहा है।